इस तस्वीर में आप एक स्विमिंग पूल देख सकते है।

दो लोग दिखाई पड़ रहे है रोड पे टहलते हुए।